सफ़ेद और पीले कलर से लिखा हुआ है कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही है एक फोर व्हीलर दिखाई दे रही है।

नीचे मैदान दिखाई दे रहा है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है हरे-भरे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है।

एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के बाजू से कच्ची जमीन भी नजर आ रही है कुछ लोग नजर आ रहे हैं खम्बे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक बहुत हॉल दिखाई दे रहा है रेस्ट्रोरेंट का जिसमें बहुत सारी कुर्सियां रखी है टेबल रखे हैं।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है कुछ जमीन दिखाई दे रही है जोकि मिट्टी की है और उसपे कुछ हरे भरे पेड़ पौधे छोटे बड़े लगे हुए हैं।

एक आदमी दिखाई दे रहा है एक हवेली भी दिखाई दे रही है घर दिखाई दे रह है जो कि हरे कलर का दिखाई दे रहा है।